यहां पर एक बहुत बड़ी फिसलन पट्टी भी दिखाई दे रही है।

रूम के खिड़की पर पर्दा भी लगाया गया है।

इस रूम में दो खिड़कियां हैं खिड़कियों को लकड़ी द्वारा बनाया गया है ।

इस ब्रांड का नाम मुफ्टी है तथा यहां पर छोटे छोटे सेल पचास पर्सेंट ऑफ के पोस्टर भी लगाए गए हैं।

इस दुकान को सफेद रंग से पेंट किया गया है तथा इनके दरवाजों को शीशे द्वारा बनाया गया है।

यह एक शॉपिंग मॉल का दृश्य है यहां पर बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी के पीछे दो आदमी है एक आदमी खड़ा है तथा एक आदमी काम कर रहा है।

यहां पर एक बहुत बड़ा भवन दिखाया गया है जिसके सामने लोहे के ग्रील का घेराव किया गया है।

तीर का निशान जैसा संरचना बनाया गया है।

बीच में सफेद रंग की कुर्सियां यात्रियों के लिए लगाई गई है।